एक्सरसाइज करने के लिए और बहुत बढ़िया नजारा है जिम का लाइटिंग भी बहुत अच्छा है।

खड़ा हुआ है बाइक भी खड़ा हुआ है यहाँ पर ए.टी. एम के सामने बहुत ही अच्छा नजारा है बहुत ही अच्छा मार्किट--

यहाँ पर भी हमे एक मंदिर वगेरा रोथ वागेरा लग रहा रोथ है ये रथयात्रा का टाइम --

यहाँ पर तो हम एक बंदे को देख रहे है बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है और एक बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है जहाँ पर घर बन रहा है।